यह एक जिम क्लास है यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं कुछ लड़के --

इस जगह पर बहुत सारे लोग भी आते हैं और यहा बगल में बहुत पेड़ भी लगे हुए हैं ।

इस जगह पर बहुत सारी गाड़ियाँ और बाइक खड़ी हैं यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं।